और दिखने में बहुत ही सुंदर है यहाँ पे एक इंसान इंटर कर रहा है अंदर की --

इस दुकान का नाम हनुमान बाइक प्वाइंट है।

जो सब लोग वर्कआउट कर रहे यहाँ पे डम्बल उम्बल सब रखा हुआ है।

ये एक पुस्तक केंद्र है जहाँ बोनीपुरी पुस्तक केंद्र नाम है इस दुकान का।

कोई इंसान खड़ा है कोई इंसान बैठा हुआ है।

बहोत से खिलौने है ये टॉय शॉप है यहाँ पे ढेर सारा खिलौना है।

यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रेयर कर रहे हैं बहुत सारे फादर्स लोग खड़े हैं।

के ऊपर एक आदमी है जो डंडा के लिय डंडा को लेके खड़ा है वहाँ एकांत --